जिसमें नींबू गाजर मटर सिमला मिर्च गोबी वैगॉन मिर्ची आम ये सब रखा गया है।

रोडो के साइड में लाइटें भी लगाई गई हे जो की जल रही --

के एक कोने में भगवान की तस्वीर को भी मालाओं से सजा रखा है इसमें गुबारे भी --

वर्कशॉप और टी स्टाल के पीछे खेत भी बने हुए हैं।

जो हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं।

ये दिल्ली के सेक्टर चार द्वारका में है।

सरकारी ऑफिस के स्टाफ के लिए ऐसी भी लगाई हुए है और --